तीन कुर्सीयां दिखाई दे रही है इसमें जाली में पेड़ पोधै लागे हुई दिखाई दे रहे हैं।

यह इमेज एक नदी की है जिसमें बहोत सारे लोग हाथ जोड़कर खड़े हुए है कुछ लोगों के हाथों में अगरबत्ती भी दिखाई दे रही है।

कार्टून भी दिखाई दे रा है स्कूटी पर एक कट्टे में समान दिखाई दे रा है।

यह इमेज एक स्टोर की है इसमें बहोत सारे अलग अलग समान दिखाई दे रहे हैं यहां पर कोल्ड ड्रिंकस की बोतल भी --

इस इमेज में बहुत सारी दुकानें दिखाई दे रही है इसके बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं कुछ बैठे हुए हैं।

जिसके बाहर कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं यहां पर--

इस इमेज में पानी में एक पक्षी नजर आ रा है जो काले रंग का है जिसके पेट पीले है।

बाइक भी दिखाई दे रही है यहां पर एक व्यक्ति ठेले के पास में खड़ा हुआ है एक बिल्डिंग भी यहां पर दिखाई दे रही है।

इसके बाहर एक गेट भी दिखाई दे रहे है अंदर बहोत सारे पेड़-पौधे नजर आ रहे है।

जयपुर की है इसके बाहर घास का एक मैदान दिखाई दे रहा है यहां पर --

एक पेड़ को लाइट से सजाया गया है।

यह इमेज एक बुक स्टोर की है इसमें बुक सेल्फ में बहोत सारी किताबें दिखाई दे रही है यहां पर दो व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इस इमेज में एक बस दिखाई दे रही है इस बस में एक व्यक्ति चढ़ता हुआ नजर आ रहा है यहां से पास से ही कुछ लोग गुजर रहे हैं।

छतरियों से लटकन से और पत्तियों से और बल्ब भी लगे हुए--

यह इमेज एक जिम की है यहां पर कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ लोग खड़े हुए हैं यहां पर पानी की बॉटल्स भी दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारी लाइट जली हुई है पास ही में बड़ी बड़ी पिलर लगे हुए हैं जिनके पास ही में --